इसमें एक व्यक्ति रोगी बनके लेटा हुआ है | एक उसका इलाज कर रहा है |

इसमे एक झरना बह रहा है बोहोत बड़े-बड़े पत्थर शायद पहाड़ पर से बह रहे हैं | नीचे हरे भरे पेड़ हैं घास की मैदान है घास उगा हुआ है बोहोत सारी झाड़ियां भी है और बोहोत साफ़ पानी दिखाई दे रहा है जो नीचे की और जा रहा है |

ये एक टीचर है जो नीचे बैठा है बहोत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है और बगल में एक झोपडी भी है।